पोटेरी फॉर्म में अलग अलग प्रकार के मटके दिखाए गए हैं।

तीन विंडो और उसके ऊपर और तीन विंडो दिखाई दे रहे हैं।

यह एक गार्डन की फोटो है।

यह टोयोटा कंपनी की कार का शोरूम है।

यह एक प्राणी संग्रहालय का इमेज है।

यह एक मुंबई के इक स्टेशन की ईमेज है।